यहाँ कुछ युवक कार की सर्विसिंग कर रहे हैं | उसका निरिक्षण परीक्षण कर रहे हैं |

इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं।

यह जो द्रश्य है यह एक मालगाड़ी का है |